इस चित्र में बहुत सारी कुर्सी और पढ़ाई करने के मेज भी नजर आ रहे हैं।

यहाँ एक बिल्डिंग है जीस पे बहोत सारी ए_सी नजर आ रही हैं।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

छत पर एक बड़ा सा झुमर लगा हुआ होता है साइड में व्हाइट कलर की लाइट लगी होती है।

बहोत सारे हरे भरे पेड़ हैं। यहाँ पर बहुत सारे पौधे भी लगे हुए हैं।

पहाड़ के पीछे एक बड़ा सा टावर लगा हुआ है।